बिजनेस मेनू का काम हो सकता है जहां ओपी यह काम चल रहा है और उसके चारों ओर काला सा घना बादल--

और ये बस पीली खड़ी हुई है और खाली सा रोड है।

को सुधारा जाता है यहाँ पे बहोत सारी गाड़ियाँ है जो खड़ी हुई है और लोग भी हैं।

यांत्रिक साधनों का उपयोग किया जाता होगा क्या पता है ये नीले नीले हरे हरे है और काले पीले सब ग्रे दिखते हैं।

गार्डन का सौंदर्य आकर्षक है और यहां पे लोग देखने के लिए आते होंगे।

यह सूखा पेड़ है जहां पे हरी भरी याली है ऊपर छाया यह किसी चिड़िया घर का नजारा होगा जहां पे--

खरीदना चाहिए और रखना चाहिए हर घर में यह नीले नीले डब्बे से है जो आगे की ओर--

के साथ मछलियां है और आठ नौ दस ग्यारह भी--

जो चारों और पेड़ों से थोड़ा बहुत हरा भरा है और रोड सुखा सूना और--

दिवाले लगे हुए अ दीवालो पे भी डिजाइन है और ये पत्थर के बने है।

यहां पे एक लड़का जा रहा है और यह एक बिल्डिंग है जहां पे यह फ्लोर है।

जहां पे टेबल कुर्सियां लगे रखी है।

अह से बचने के लिए स्वेटर पहना जाता है।

यहां पे टी_वी ए_सी वगैरा लगा रखे हैं कुलर और बहोत सारे--

वाले सब मशीन है जिनका उपयोग करके बिजली या बिजली का--

यह हाथी की मूर्ति है जहां पे बच्चे खेल रहे हैं।

अभी सरजीत करके लोग बड़े से बड़े और महान बने जाते हैं और यहां पे दुनिया का का हर ज्ञान में--

यह एक किसान है जो अपने खेत में सिंचाई कर रहा है और--

कपड़े का कॉटन बेचा जा रहा है। कल--

अपने लोगों के लिए खुला हुआ है।